सामने में उर्दू भाषा में कुछ लिखा गया है।

इ कपड़े का दुकान लग रहा है कई सारे टेबल लगे हुए हैं काउंटर के रूप में --

जो की कलरफुल माले जैसे लग रहे हैं।

प्रयोगशाला का दृश्य है सामने दीवाल में--

फोटो में कंकाल का चित्र दिखाया गया है जिसमें कई भाग दिखाए गए हैं।

बैठने के लिए यहां चेयर लगे हुए हैं सामने में एक पाइप बिछी हुई है जिससे पानी अ पौधों में पानी डाला जाता होगा।

नदी के किनारे में बोहोत हरियाली है पूल बोहोत ही पुराना खंडहर जैसा हो गया हैं।

और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भटगांव क्षेत्र के अंतर्गत आता है पिछे में बहोत बड़ा ग्राउंड है।

मकान निर्माण हो रहा है सामने में दो इंसान खड़े हैं एक इंसान --

जो शायद कि इंजीनियर है दूसरे इंसान को सलाह दे रहा है कुछ करने का हाथ में कुछ पड़ा हुआ है और दोनों व्यक्ति सिर में टोपी लगाए हुए हैं।